पेट्रोल पंप पर काफी सारे लोग दिखाई दे रहे--

काफी पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

कुछ जेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं।

एक पीला बॉल भी दिखाई दे रहा है।